यहा पे सामने बहुत सारे घोड़े दिखाय पड़ रहे है जो वाईट रंग के है। स्सभी फूटे से बंधे हुए है उनेक गले में रस्सी बनी दिखाय दे पड़ रही है। पीछे खुच तब्बू जेसा दिखाय पड़ रहा ह। वहा पे एक ब्लेक कलर का घोड़ा भी दिख रहा है सामने बहुत सारे लोग दिखाय पड़ रहा है।

सामने बहुत सारे बच्चे दिखाई पड़ रहें हैं नीचे जमीन ब्राउन कलर की दिखाई पड़ रही है सामने एक आदमी खड़ा हुआ है उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है सभी बच्चे शीशे में देख के डांस कर रहें है यहाँ पे एक बड़ा सा शीशा भी लगा हुआ हैऊपर एक बड़ा सा बोर्ड जैसा दिखाई पड़ रहा हैं वहाँ पे एक लाइट भी लगी हुई दिखाई पड़ रही है।

सामने एक बड़ी सी माला दिखायी पड़ रही है जो कि रेड कलर की है। नीचे फुल लगे हुए है येल्लो कलर के --

पीछे एक बड़ा-सा पेड़ दिखायी पड़ रहा है जहाँ पे मकान है। वहाँ पे मकान का कलर औरेंज कलर का दिखायी पड़ रहा है। नीचे बहोत सारे लोग भी खड़े हुए हैं। नीचे जमीन ब्राउन कलर की दिखायी पड़ रही है। पीछे मकान वाइट कलर का दिख रहा है।

सामने बहुत सारे लोग दिखाइ पड़ रहे हैं सभी लोग मार्किट में मछली खच खरीदने आये हैं। साइड में कुछ खंभे दिख रहे हैं दोनों साईड में मछलियां बिक रहीं हैं वहाँ पे भी साईड में पीछे लोग दिख रहे हैं।

पिक्चर में सामने एक आदमी बैठा हुआ है। सामने एक टेबल रखी हुई है जो कि ब्राउन कलर की है। आदमी के हाथ में कुछ कॉपी की फाइल जैसा दिख रहा है। सामने सीढियां दिखाई पड़ रही हैं। साईड में रेलिंग भी लगी हुई है।

सामने बहोत सारे पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं जो की ग्रीन कलर के दिखाई पड़ रहे हैं। निचे पानी ग्रीन का और ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहा है। पीछे बहुत दूर तक बहुत सारे पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं। और रोड जैसा दिख रहा है।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

यहा हमें सामने एक बड़ा सा पत्थर दिखाई पड़ रहा है। पत्थर के नीचे कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे हैं यंहा पे एक आदमी ने फोन ले रखा है नीचे फर्श ग्रे कलर मे दिखायी पड़ रही है यह बोहोत सुन्दर दिखाई पड़ रहा है। यहां पत्थरों के ऊपर घास दिखाई पड़ रही है | यहाँ छोटा सा रेड कलर का बोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा है।

सामने एक बिल्डिंग दिखायी पड़ रही है जोकि दो खंड की बनी हुयी है। ऊपर वाला हिस्सा ग्रीन कलर में दिखायी पड़ रहा है। नीचे ग्रे कलर का दिख रहा है। साइड में स्कूटी लगी हुयी है जोकि रेड कलर और ग्रे कलर की दिखायी पड़ रही है। साइड में एक कुर्सी रखी दिखायी पड़ रही है।

यह ब्लू कलर के कारपेट पे रखी हुई है। पीछे एक छोटी सी अलमारी जैसा दिखाई पड़ रहा है। सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। पीछे एक बड़ा सा ड्रम भी रखा हुआ है जो कि ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है। सामने औरत फोन पे बात --